और बच्चे लोग को देख रहे हैं की बच्चे लोग क्या कर रही हैं और ये लोग जो है अपनी --

इ जो है खेलने वाली कार हो या फिर इसे कहिए ए कहिए ये एक थार के नाम से जाने वाला गाड़ी है और इसी गाड़ी को एस.बी.आई. कार्ड ऑफिस के प्रांगण में जो है लगाया गया ।

ये बहुत ही सुंदर है और यहाँ जो है बहुत जो है अच्छे-अच्छे चीज़ जो लगाए गए हैं | ये जिम का ही पिक्चर है| यहाँ जो है बच्चे लोग जो है बोक्सींग इन कराटा की तयारी जो करते है उसकी --